उसमें दो बॉटल्स दिख रही है एक कप है और उसके साइड में टिशू पेपर दिखाई दे रहे हैं आमने सामने में दो चेयर रखी हुई है और आजू बाजू में भी--

यह कुछ हॉस्पिटल अभी अभी न्यू लॉन्च हुआ है।

मतलब एक ग्राउंड बना हुआ है जो कि वो निकाल रहा है जे_सी_बी के थ्रू ।